यहां सामने कि ओर एक बड़ा-सा जिम दिखाई दे रहा है जिम के अंदर एक मशीन भी दिखाई दे रही है ऊपर कि ओर ए_सी लगा हुआ है।

दिखाई दे रहा है खेते के सामने कई सारे --

यहां सामने की ओर एक कमरा बना हुआ है जहां अंदर की ओर एक जिम है जिम में कई तरीके के मशीने दिखाई दे रही है।

यह सामने की ओर एक शादी हॉल दिखाई दे रहा है जहाँ सामने एक फव्वारा चल रहा है सामने की ओर व्यक्ति और कारे भी खड़ी हुई हैं।